साथ ही में उसका एक छोटा बछड़ा भी दिखाई दे--

यहां पे आप देख सकते हैं एक होटल है।

पांच बाइक और एक इंसान जो उसके अन्दर जा रहा--

जे_सी_बी है जो डिफोरेस्टेशन का काम कर रहे हैं।

जिसमें से इंसान चल के जा सकते है जैसे कि अभी एक इंसान जा रहा है और बहुत ही हरियाली है इस बाग में।

यहां पे एक लड़का है जो खुद की--

यहा पे घिन देखिये सिर्फ चार ही खाई है।

उस चीन के बाहर बहोत सारे लड़के भी दिख रहे है।

यहां पे आप देख सकते हैं। यह एक--

जो बातें कर रहे हैं एक तो स्टाइल में ही खड़ा हो गया है।

पता नहीं क्या ही रहे हैं गाड़ी ठीक रहे हैं या देखा --

गैरेज है जिसके इधर लोग कार ठीक करते हैं जैसे की--

अभी एक अंकल कर रहे हैं। इन्होंने कार की दोनों गा ओ खोल के पीछे की सीट में आग लग रहे हैं।